खे नजर आ रहा है यह ऑफस के कुछ लोग दिखाई दे रहे है यहा पर कुछ लाइट दिखाई दे रही है यहा कुछ फुल दिखाई दे रहे है

गेट सफ़ेद कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पे काफी सारे खम्भे नजर आ रहे है खम्भों में काफी सारे तार दिखाई दे रहे है।

दिखाई दे रहा है स्टेज को काफी अछे से डेकोरेट किया गया है स्टेज को नेट से डेकोरेट किया गया है यहाँ पे काफी सारे फ्लावर्स लगाये गये है यहाँ पे कुछ मालाए लगाई गई है।